आसमान दिख रहा है जालियां लगी हैं रेलिंग दिख रही है आसमान दिख रहा है।

बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन है।

टेब कुर्सियां लगी हैं टेबल पर टिशू पेपर रखे हैं।

लाइटें लगी हैं सीलिंग करी गई है।

इसमें आपको ये गार्डन दिख रहा है ये शादी हाल है ।

ये दो पार्ट्स में बना हुआ है।

अंदर जाने का बड़ा दरवाजा दिख रहा है।

इसमें आपको एक शॉर्ट परमा लिखा हुआ दिख रहा है।

पानी चमक रहा है बिल्डिंग दिख रही है।

इसमे आपको तालाब का व्यू दिख रहा है बड़े-बड़े दरस्त दिख रहे --

वे आपको एक शॉप दिख रही है।

मैदान दिख रहा है बहुत सारे ड्राइवर खड़े हैं।

गार्डन बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है।

जी कुछ लोग के परछाई दिख रही हैं।

इस तस्वीर में आपको एक स्क्रीन दिख रहा है जहां पर लड़कियां डांस कर रही हैं।

यहां पर सभी सामान रखा हुआ है।

कई सारे सामान रखे अलमारियों में अलमारियों भरी पड़ी है।

इस तस्वीर में आपको एक--

जिस पे बड़े-बड़े खजूर के हैं।